डिवाइडर लगा है और कुछ लोग वहां आते जाते रिक्शे में दिखाई--

यह एक स्टोर है जिसके अंदर बहोत सारी आलमारियां बनाई गई हैं।